बहोत अच्छी सजावट हुई है। लाइट्स बहुत सारी हुई है और कलर भी अच्छा है कार्स का।

कुर्ती का कलर वाइट है शरीर का कलर ऑरेंज है अंटी लोग भी खड़ी हुई है अंकल ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए बहुत सारे अंकल बैठे हुए--

सामने की तरफ देख रहे हुए हैं और रात का टाइम है और लाइट भी बहुत सारी जमी है सजावट अच्छी हुई है और देखिए--

जिम है यहां पे देखिए अ वेट कम करने वाला भी है जिम है इधर पे एक अंकल ट्रेनर भी मतलब ट्रेनर है।